ये एक मस्जिदी का फोटो है जहाँ पर हम देख सकते हैं ए जो मस्जिद है वो सुन्दर दिख रहा है।

ये एक बाइक सर्विस सेंटर है। जिस बाइक सर्विस सेंटर का नाम एम.एस. बाइक सर्विस सेंटर ।

दो खूंट हेे और घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है। घर के ऊपर एक बड़ा सा तार गया है जोकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए है।

ये एक बैंक है जिस बैंक का नाम है प्रथम बैंक । ये बैंक को एंट्री करने के लिए एक बड़ा सा गेट है।

यह एक बैंक है जिस बैंक का नाम है प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक । इस बैंक में --

और नीचे एक टाइल लगा हुआ है और ओ जो रूम है रूम के पीछे एक बाइक खड़ा हुआ हेे जिसका की एक पहिया दिख रहा है।

अ--व्हाइट रेड और कुछ वॉल का से घेरा हुआ है जिस काच का कलर है ग्रीन --